घर पर टीन का श्लोक रूप है मंच का रंग हरा है।

एक चौड़ा और साफ सुथरा सीमेंट एरिया दिख रहा है।

ये एक बंद एरिया है जिसमें ट्रांसपेरेंट कर्टेन्स और विंडोस लगे हैं।

दीवार पर कई फोटो फ्रेम और पोस्टर लगी हुई है।

नीचे एक छोटा झरना या पानी का प्रभाव है जिसमें लोग खेल रही है।

मौसम बादली भारा और थोड़ा धुधला लग रहा है।

होटल के आसपास कच्चा रास्ता और मिट्टी का मैदान है।

आसमान में कुछ बादल भी हैं।

इमेज में एक बड़ी सोने की मूर्ति दिख रही है।

एक वुडन सेल्फ में पेंट के डब्बे और हार्डवेयर आइटम रखी गई है।

टेंट अलग अलग रंग की है जैसे पीला हरा सफेद।

सामने एक बड़ा लान या मैदान है यहां घास है।

पेड़ों के बीच में कुछ फूलों के पौधे भी है।

वॉल और टेबल दोनों ब्लू लाइट में रोशन है।

हट को सपोर्ट देने के लिए काला रंग के खंभे है।

पुल का डिजाइन बहोत ही सीधा और सिंपल है।

दोनों तरफ महिलाएं सारियों में बैठी है।

बैठक में पांच नीला रंग का सोफा रखा गया है।

काफी सारे पेपर और फोल्डर अलग जगह पर रखे गई है।

बाहर प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई है।

शॉप का नाम आर एंड बी एंटरप्राइज है बाहर कलर फुल बोर्ड लगी हुए है जिनमें सर्विसेज लिखी है।

हर मैट अलग अलग रंगों का कांबिनेशन दिखाता है।

ये ऑब्जेक्ट फ्रैशली पेंटेड लग रहा है।